माँ भगवती की इच्छा हर किसी की इच्छा पूरी करती है माँ भगवती --

जो इस मतलब जो भी आते हैं वो अपनी इच्छा को बोलते हैं माँ भगवती से की हमारी ये इच्छा है इस को पूरी कर दो।

माँ भगवती उनकी इच्छा --

साम का समय है। सूरज छिप रहा है। जब सूरज छिपता है तो लाल-लाल सा मौसम हो जाता है और अच्छा लगता है।

ठंडा सा मौसम हो जाता है।

जब यहाँ बैठ कर देखो।

और सुंदर है। ये सब कुछ देखना अच्छा लगता है। बच्चे गेम खेल रहे हैं। मस्ती कर रहे हैं। एन्जॉय कर रहे हैं।

आस-पास मार्केट हैं जो बच्चों को पानी वगैरह की प्यास लगे तो मिल जाता है।

गाड़ी से जाता है कोई किसी से जाता है तो दिक्कत नहीं होती है। टेम्पू रिक्शा सब मिल जाता है।

ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देने आते हैं तो बच्चे साथ आते हैं दुकान पर सामान लेते हैं।

और ये बैडरूम के ठीक बेड के सामने ठीक ही --

शाम सुबह हवा आती है तो अच्छा लगता है। बैडरूम में खिड़की जरूर होनी चाहिए।

और ये इसके ऊपर क्रीम जो लगी हुई है इडली के ऊपर ये बहोत टेस्टी लगती है।

खाने में इडली और इडली बच्चों को भी बहुत पसंद आती है।

जिम नया खुला हुआ है।

और भोले नाथ की पूजा करते हैं। गंगा जी की भी पूजा करते हैं।

पूजा-वूजा करते हैं गंगा जी की।

ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर गणपति बप्पा की सवारी निकलती है।

यहाँ पर हर तरीके की चीज इस्ते मतलब सब कुछ मिलता है।

इसमें शैम्पू हैं तेल हैं साबुन है।

अंगूर बहोत पसंद आते हैं और ये बहोत अच्छे लगते हैं खट्टे-मीठे खाने में।

टेस्टी लगते हैं और ये गर्मियों में भी गर्मियों में सर्दियों में हर मौसम में मिलते हैं।

और इसमें ट्रेन में बच्चे घूमते हैं बैठते हैं। हम बड़े भी बैठते हैं।

ये गुरु गुरुजी की रथ यात्रा निकाल रही है।

यहाँ हर तरह के झूले और खाने-पीने की स्टॉल लगे हुए हैं।

कोई कुछ ले रहा है कुछ। सब एन्जॉय कर रहे हैं और बच्चे झूला झूल रहे हैं।

और हमें भी अच्छा लगता है डीजे पर डांस करना और बच्चों को भी डीजे पे डांस करना बोहोत अच्छा लगता है।

और यहाँ पर आके पिकनिक मनाते हैं जूस पीते हैं। फ्रूटी --

और ये बहोत सुंदर होटल है अंदर से भी बहोत सुंदर है।